इस मैदान में हरी-भरी दुभा उग रही है।

व्यक्ति के हाथ में पुस्तक है और एक वेक --

एक मोर पंख भी लगा हुआ है।